यह एक बागवान की तस्वीर है। जिसमे एक मश --

इस तस्वीर में एक जेब्रा दिखाया गया है दरसल यह जेब्रा का पुतला है जो किसी पार्क में बनाया गया है।

यह एक गार्डन की तस्वीर है जिसमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे झूलों को दिखाया गया है ।

इसमें एक ओवरब्रिज भी दिखाया गया है।

इसमे दो तरह के स्लाईड दिखाए गये हैं।

जिसमे एक पेड़ और कुछ गाय जानवर भी दिखाय दे रहे है। इस तस्वीर में दो बाईक भी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर डॉक्टर घनश्याम सिंग कॉलेज ऑफ़ एज्युकेशन की है जिसमें चार मंजिला एक ईमारत दिखाय गयी है।